एक इमारत है जिसके आगे एक झंडा फहरा रहा है पीछे उसके कुछ टावर है बगल से कुछ पेड़ पौधे हैं।

हाउस के आगे एक मोटरसाइकिल रखी हुई है दुकान में अंदर कुछ लोग बैठे हुए है पीछे दीवार है जो की बालू और वाइट कलर की दीवार है बगल से कुछ पेड़ पौधे देख रहे है। और--

सामने एक दरवाजा हैं जिसमें अ मेटल में कुछ बैगनी कलर की मेटल हैं सामने दिवाल जो हरे कलर की दिवाल हैं।

लंबी सड़क आ रही है चारों तरफ पेड़ पौधे है सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं वही गेट लगा हुआ है जो की लोहे का गेट है और हरे कलर का पता है और जालियों का गेट है ऊपर कुछ--

ऊपर एक बैनर है जिस पर जिओ लिखा हुआ है गंगापुरम लिखा हुआ है।